डेक्स के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में बच्चे बैठे हैं।

यहां शीशे के गेट लगी हुई है।

बैठने के लिए अंदर चेयर्स लगी हुई है।

वहां एक विंडो ए_सी लगा हुआ है।

यहां पर ब्लैक कलर्स की तारे हैं।

इसके बाहर एक वाइट कलर का बोर्ड लगा है। उस पर आस्था डोर्स विंडोज --

औ यहां पर बहुत सुंदर डेकोरेशन की गई है।

और यहां पर एक बोर्ड लगा है।

यहां पर एक बेड है जिस पर वाइट और मल्टी कलर के चदर बिछी है।

यहां पर पांच फ्रेम लगे हुएं हैं।

और वहां पर बहुत अधिक मात्रा में बैलुन्स लगे हुए हैं।

यहां बाहर दो फ्लावर पॉट पड़े हैं।

यहां पर एक ए_सी लगा है।

और यहां बहुत ही ऊंचाई पर हैं।